यह नदी है नदी में नाँव चल रही है ये नाला है ये

दो आदमी हैं जो नांव पे बैठे हुए हैं दोनों लग रहा है काटने मछली मार रहा है लोग नदी का पानी ब्लू कलर का है दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है ।

भिंडी है प्याज है मिरचयियो रहा है लोग देखने में बहुत सुंदर लग रहा है भी रखा हुआ है ।

कैंची रखा हुआ है जो कैंची है गैस सिलिंडर है पोर्स है।

ब्लू है कला है कला है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ चार आदमी खड़े हैं चश्मा लगाये हुए हैं।

यहाँ पर मेला लगा हुआ है। मेला में बहुत सारा रंग बिरंगा झूला है सभी आदमी सब झूले में बैठ कर झूल रहा है।

इधर में अंदर में कुछ कुछ पानी रखे हुए हैं दोनों तरफ फोटो लगा हुआ है।

ट्रांसफार्मर है कैरैट रखा हुआ है लग रहा है मछली का दुकान है एक आदमी हाथ रखे हुए है चप्पल पहने है टोपी लगाए --

स्प्राइट का बोतल है नापने वाला मशीन है कुरकुरे है शैम्पू है --

धोती पहना है ड्रेस पहना है शॉर्ट पहना है घड़ी पहना है यहाँ पे शादी का समारोह है बारात जा रहा है।

ड्रेस पहना है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है दो-दो ऊँगली दिखा रहा है।